यहां पर सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है।

बहोत सारी बोट दिख रही है बहोत सारे लोग खेल रहें हैं।

यह हॉल बहोत बड़ा दिख रहा है।

यहां पर एक दुकान है।

यहां एक शादी का फंक्शन है।

एक महिला ने नया साड़ी पहना है।

यहां पर एक बड़ा सा ढाबा है।

बड़े-बड़े बुकेट हैं।

इसमें बहोत सारे पेड़ हैं बड़ी बड़ी--

यहां पर एक बड़ा सा टेबल है।

और एक बिल्डिंग भी दिख रही है।

हरे हरे पेड़ हैं पौधे--

यहां पर एक बहुत सुंदर होटल है।